पुल को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ हैं।

सामने कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

जो की ग्रे और काले रंग का हैं एक बल्ब जल रहा हैं।

सामने काफी कार दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कार्ड ऊपर पड़े है कुछ नीचे--

पीछे उनके के काफी बड़े पौधे हैं।

क्रीम है उनके ऊपर कारीगरी की गई है पेंटिंग की साथ में दो पीछे बाउल पड़े हैं।

साइडों पर छोटे छोटे पेड़ हैं कमरों में--

सामने एक एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं।

दुपट्टे से डेकोरेशन की है जिसका रंग गुलाबी और जमुनी है।

जिसने सफेद कलर की गाउन पहनी है।

पीछे पेड़ लगे हैं तारन तारे लगी हुई हैं और छोटी छोटी--

एक औरत ने नीले रंग का जमपल और लाल--

सामने एक कैफे दिखाई दे रहा है जिसका नाम दा ग्लेनर लाइव्ड है यह बहुत बड़ा है इसमें--

सामने एक जनरेटर दिखाई दे रहा है।

और एक कंपैन खड़ी है जिसके ऊपर एक लड़की बैठी है उसने सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

सामने एक विद्या इंस्टीट्यूट ओनफार्मेशन है यहां पर बहुत बड़ा--

एक कंधे पर उसका वजन कर रहे हैं।

पीछे एक ग्रीन कलर की चद्दर लगी हुई है यह चा--